बहुत सारे गमले में छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं गमले को रेड कलर से पैंट किया गया है जो बहुत अच्छा लग रहा है और नीचे एक कार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक-क -क जिम दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी मशीन रखी हुई है जो ब्लैक कलर की है नई नई दिखाई दे रही है एक डीजे भी लगा हुआ दिख रहा हैं उसके --

सामने एक पानी बोतल रखा हुआ है नीचे मे टाइल्स लगा हुआ है भूरे कलर का है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक दीवार उठा हुआ है और दूर-दूर काला काला दिखाई दे रहा है।